एक छोटा सा दुकान है टेबुल लगा--

वह डबल टेबल है कुर्सी है एक आदमी बेंच पे बैठा है और एक छतरी लगा हुआ है एक बल्ब है।

जिसमें कि देसी मुर्गा है विदेशी मुर्गा है वाइट कलर पेंट किया हुआ टच लगा हुआ है सीटर है बारकोड है बगल में दवा खाना है।

वेलकम टू टूरिज्म कैपिटल ऑफ महाराष्ट्रआ आ औरंगाबाद।

यह ब्लड डोनेशन कैंप है मेरा माटी मेरा नमन मेरी माटी को मेरा नमन दो छतरी लगा हुआ है बहुत कलर का है।

एक पीला कलर का डिब्बा एक काला कलर का डिब्बा एक रेड कलर डिब्बा है एक जांघिया का डिब्बा है और एक --

ईट का डिजाइन बना हुआ है।

लोहा का चैन है सीमेंट का।

बहोत लोग नमाज पढ़ने के लिए आए है जिसमें की एक--

एक बड़ा घर है जिसमें की ईटा कलर पेंट हुआ है और रेड कलर का डिजाइन मारा है एक आदमी फोन पर बात कर रहा है और--